सर खुजाते हुए और साइड में कुछ एक आदमी कुछ पी रहा है।

राहुल हाइड्रोलिक हमारे यहां सभी प्रकार के हाइड्रोलिक पंप बनाए जाते हैं। केन जे_सी_पी --

और एक सिंटेक्स की टंकी यहां दिख रही है पानी की।

और यहाँ सामने एक बिल्डिंग दिख रही हैं जिसमें कुछ लोग खड़े हुवे सामने नजर आते हैं।

कुछ सामने की ओर गाड़ियां भी नजर आ रही है।

और यहां कुछ साइड में बॉक्स जैसा कुछ रखा हुआ दिख रहा है।

और कुछ खंबे लगे हुए दिख रहे यहां पर--

और कुछ बच्चों की बच्चों के कपड़े मिलते है उसकी कुछ दुकान अंदर हैं।

और यहां कुछ बच्चों के कपड़े भी टंगे हुए हैं दुकान के अंदर।

और यहाँ पर कुछ बैठने वाली चेयर भी है और कुछ लिखने वाली चेयर भी लगी हुई है।

कुछ बच्चे हैं जिनके हाथ में वेट दिख रहे हैं।

यहां पर एक समुंदर दिख रहा है सामने--

कुछ खाली जगह बैठने की चेयर लगी हुई है और यहां पर एक पौ पेड़ पौधा भी लगे हुए हैं।

और यहां पर इस आदमी के पीछे कुछ सामान भी--

यहां पर दो बोट दिख रही है एक बोट पे दो आदमी और एक लड़की बैठे हुए हैं दिख --

जो फूल तोड़ के जमा कर रही है और सामने कुछ और दूसरे--

और सेव वगैरह के और यहां पर एक कांच का काउंटर है जिसमें ड्रिंक वगैरह ठंडे पानी की बोटल रखी हुई है।

ये एक बिल्डिंग दिख रही है इसमें एक कथ क्रीम कलर की ये कत्थई कलर की ये बिल्डिंग दिख रही है।

और यहां पर कुछ सड़क टाइप एरिया दिख रहा है।

और बाहर कुछ इंटें हु जमी हुई दिख रही है सामने की ओर बाहर से गाड़ी आते हुए दिख रही है लाइट चमक रही है और यहां पर--

तो ये एक रेस्टोरेंट है और बाहर कुछ खाने की चेयर लगी हुई हैं और बैठने वाली चेयर भी लगी हुई है।